उस सड़क पे एक बस देखाई दे रही है और उस बस पे --

और इधर-उधर हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

और यहाँ इसकूल का कलर भी रेड दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर लोग बैट रखे हैं कोई बैट रखे हैं तो --

कोई खड़े हैं कोई सफाई कर रहे हैं।

और यहां पर बड़ी-बड़ी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और उन सीढ़ियों के इधर-उधर --

कई सारी गाढ़ी खड़ी हो रक्खी हैं।

और वहां पर कई सारे लोग बैठ रखे हैं।

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है और इधर-उधर एक बड़ा पार्क --

यहाँ पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

पत्थर नजर आ रहे हैं और हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि कई --

उम्म दो-तीन इंसान बैठ रखें हैं और --

कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की हरे भरे दिखाई दे रहे हैं|